और इसमें तीन लोग खड़े हो के आपस में चर्चा कर रहे हैं और एस्टीमेट बना रहे हैं वहां के सामान रखे हुए जाने का।

पूजा करवा रहे हैं और जो लोग देवी माता को मानते हैं व्रत रखते हैं वहीं लोग पूजा के लिए बैठते हैं वो हम भी करते--

एक बेडरूम है और बेडरूम काफी अच्छा और सफाई है।

और एक सामने लिक्विड सोप है और लिक्विड सोप के बगल में--

और उसके रोड थोडा छोड़ के बाइक खड़ी है बाइक के बगल में एक झाड भी है और झाड़ --

एक बहुत अच्छा घर बना हुआ है बंगला है बंगले के अंदर एक मंदिर बनाया हुआ मंदिर--

प्रचार किया जा रहा है और बच्चों को इसमें कैम्प लगा कर पढ़ाया जा रहा है।

और कोई कपड़े निकाल के नहा रहा और कोई कपड़े पहेन के नहा रहा सभी लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे --

हनुमान मंदिर ये दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली में उसका मोबाइल नंबर भी दिया है।

और उसमें से कोई भी खरीद कर लेकर जा सकता है।

भगवान हमारे काफी पूजनीय हैं पूरे वर्ल्ड में इनका पूजा किया जाता है इनका।

या तो अं इंडिया का पंद्रह अगस्त हो जाता है तब जा के झंडे के सामने ऐसे प्रेयर किया जाता है और उसमें दो कंधे पे बच्चे तिरंगे लगा--

इसमें जिम का सारा प्रोडक्ट मिलता है जैसे आपको पाउडर लेना हो उसमें--

और आगे काफी पार्किंग का एरिया है।

ये एक शीशे का दुकान है जिसमें शीशा काफी--

अपना म्यूजिक अपना डांस क्लब हो सकता है।

लोग लाइन लगा के बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं काफी चारों तरफ भीड़ दिख रही हैं और कही कही बीच में जगह गैप भी बनाया हुआ--

एक बड़ा मंदिर है एक छोटा मंदिर है दोनों मंदिर एक ही ग्राउंड के अंदर है और मंदिरों के आजु बाजू में काफी हरे भरे --

लाइट का कनेक्शन भी बिछा हुआ है दोनों तरफ बिल्डिंगे है और जो रोड है रोड पर गाड़ियां चल रही--

और मॉल के अंदर मुझे लग रहा है कि इसमें--

टायलेट की जो टंकी होती है उसको बेचने का ये दुकान है।

आने के लिए ओवर सर्विसेज के बारे में गया बताया जा रहा है इसमें बोर्ड का लिखा हुआ है और और फेल्ट के बारे में लिखा हुआ हैं।

और कुछ अदवाइज अदर भी सब्जेक्ट के विषय पर भी--

और इसमें कोई भी जाकर ले सकता है जिसके पास पैसा--